इस चित्र में कुछ नदियां दिखाई दे रही हैं।

यह इमेज एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का हैं जिसमे बड़े अक्षरों में इंग्लिश से क्लीयरेंस लिखा हुआ हैं। इस --

हैं और इसमें एक आदमी एक फोर व्हीलर के ऊपर बैठा हुआ हैं जिसने लोअर और टी-शर्ट पहना हुआ है।

पानी भरा हुआ है और फवाररे भी लगे हुए हैं। इस होटल के आस-पास बहोत सारे पेड़-पौधे भी लगे हैं।

इसमें सामने एक बोर्ड भी नज़र आ रहा है जो की एस बी आई बैंक का है और इसमें कुछ फोरवी फोरव्हीलर और टूव्हीलर भी नज़र आ रहीं हैं।

गाड़ियां नज़र आ रही हैं और यह बोहोत ही साफ़ सुथरा पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है।

इस चित्र में सामने की ओर एक सुन्दर सा मकान बना हुआ है और ये बोहोत ही हरा भरा एरिया --

यह चित्र एक सामारोह का है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। यहाँ --

इस चित्र में दो आदमी और एक सफ़ेद कलर की ब्लोरो दिख रही है और एक दुकान भी दिखाई दे रही है।